इस पिक्चर में हमको यह दिखाया गया है कि यह एक गाड़ियों का बहुत ही शानदार शोरूम है जिसमें कि तीन गाड़ियां खड़ी हैं और सामने एक व्यक्ति खड़ा है।

नीचे एक एक डबल बेड है जिसमें एक व्हाइट कलर की चद्दर है जो की बहुत ही शानदार है और सामने एक बहुत ही अच्छे अच्छे पर्दे लगे हुए हैं और इस कमरे में--

तीन व्यक्ति आपस में बात कर रहे है और में कॉफी पी रहे--

कुर्सी के साइड में एक व्यक्ति झाड़ू मारता हुआ हमको इस पिक्चर में दिखाया गया है।

एक मैदान है जिसमें की चार घोड़े घुड़सवार चार घोड़े है।

दो माला घर दिखाई दे रहा है जिसमें की अभी प्लास्टर नहीं हुआ है और उसी के सामने एक बिजली का खंभा भी है।

और सामने ही हमको काफी अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़ देख रहे हैं।

यह जो सामने हमको तस्वीर दिख रही है ये एक लाइब्रेरी की तस्वीर है जिसमें कि हमको देख पा रहे हैं कि पीछे बहुत सारी बुक्स पड़ी है।

सामने तीन कुर्सियाओ और उन्हीं के सामने तीन शीशे हैं और उन शिशो में हमको दो व्यक्तियों की तस्वीर दिख री है।

यह जो सामने हम को एक तस्वीर दिख रही है ये हमको एक बहुत बड़े मैदान की तस्वीर दिख रही है इसमें कि हम देख पा रहे सामने एक जिग जैग जिग जैग सा झूला लगा हुआ।

जैसे कि सामने हम इस तस्वीर में देख पा रहे कि इस तस्वीर में हमको एक इंडियन कॉफी हाउस दिख रहा है।